यह दृश्य एक घर का है जो काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है।

यह दृश्य किसी कंपनी के रूम का या किसी के घर का भी हो सकता है।

सर ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है तथा पीछे एक औरत भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इसके साइड में धारी वॉल कार बाजार व प्रोपर्टी सलाहकार की दुकान है।